एक सलून की दुकान है ऊपर ब्लेक कलर का बोर्ड है और अ बोर्ड के अंदर लाईटिंग लगी है और वाईट कलर का कुछ नेम दिख रहा हैं।

यह रोड है जिसपे से बहुत सारे लोग पैदल चल रहे है और गाड़ी भी जा रही है।

ये एक हॉल है यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है बलून से येलो और ब्लैक से और एक कुर्सी भी रखी हुई है एक पिलर है दो खिड़कियाँ है।

जाली लगी हुयी है लोहे की ओर सरिये भी खड़े हुए उकसे पीछे ग्रीन कलर का घर है ओर कुछ लड़की का भी है।

और बहुत सारे जन वहाँ पे ख़रीदने आ रहे है ओर वहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी हुयी है ओर वहाँ पे तराजू भी है ।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे दो अपार्टमेंट है दो है दोनों एक वाईट कलर है और एक ग्रीन कलर का है।

ये कुछ बार टाईप का है यहाँ पे काउंटर के ऊपर कुछ रखा हुआ है सजाने के लिए और कुछ डिजाइन ब्लू कलर की पीछे चील का कुछ डिजाइन बना हुआ है।

और पोस्ट का पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसके सा सामने एक घर बनाया है उस पे ग्रीन कलर की टंकी रखी है बाहर खंभा--

यहां बहुत बड़ी दुकान लग रही है यहां पर बोहोत सारे बोरे रखे हुए है निचे ज़मीन पर रंगोली भी बनायीं गयी है ।